यह एक हॉल दिख रहा है जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है इस पे फॉर लिखा हुआ है बहोत ही अच्छी तस्वीर है ये।